पत्थर वगैरा भी दिखाई दे रहे हैं।

और एक औरत खड़ी वी है मछलिये को देख रही है। बहुत तरह की मछली देखि वी है कुछ बड़ी कुछ छोटी कुछ लंबी कुछ चौड़ी।

इस चित्र में एक फूल की दुकान दिखाई दे रही है। जिसमें बहोत सारे पत्तियां वगैरा भी दिख रही है और फूल वगैरा भी गेंदे के फूल भी दिखाई दे रहे हैं।

मेरीगोल्ड भी फूल दिखाई दे रही है। कु भगवान जी की तस्वीर भी चारों ओर से लगी हुई है। कुछ लोग बैठके बातचीत कर रहे हैं।

रोड फतेहगढ़ लिखा हुआ है। कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। पेड़ वगैरा भी दिखाई दे रहा है। आसमान भी दिखाई दे रहा है।

इर्द-गिर्द भी लोहे की डिजाइने दिखाई दे रही है। नीचे में तार वगैरा दिखाई दे रहे हैं। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं।

कॉकटेल पार्टी दिख रही है डिसमे बहोत सारे लोग हे खड़े हुए हैं और चियरे वगैरा लगी वी है।

अ लाइटें वगैरा की रौशनी कम आ रही है। ब्लू रंग की लाइट की रौशनी दिख रही है। अ अंदर में एक सफेद रंग की लाइट की रौशनी दिख रही है।

मा अ मानवपुरम गोल्ड लोन का अ पोस्टरें वगैरा भी दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में एक आदमी है जो कि एक दरवाजे को पेंट करते हुए दिखाई दे रहा है। सामने में एक बड़ा-सा खे खिड़की भी है।

दो एंटीना भी दिखाई दे रही है आसमान भी दिखाई दे रहा है घास वगैरा भी दिखाई दे रही है।

तीनों ने लाल रंग की चुनरी ओढ़ी हुई दी है। एक छोटी-सी मूर्ति भी है जिसमें लाल रंग की चुनरी ओढ़ी हुई है। फूलों फूल चारों ओर से लगी हुई है। मालें --

पेड़ वगैरा भी दिखाई दे रहे हैं। तारे वगैरा भी दिखाई दे रही हैं।

एक कत्थी रंग की चादरें भी बिछी हुई है।

इस चित्र में एक ब्लू रंग का लंबा सा बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें डॉक्टर राधा कृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल --

एक तालाब है बड़ा जैसा। पीछे बंगले वगैरा दिखाई दे रहे है।

उमर पुर का है। नीचे में गे लोहे की गेट लगी हुई है जालीदार। एक आदमी भी खड़ा है। दो बाइकें भी लगी हुई हैं।